यहाँ पुल का निर्माण चल रहा है पुल बन रहा है बहुत ही बड़ा पुल बन रहा है बहुत अच्छा है।

और सरिया सिटींग में करके इसका प्रयोग किया जाता है छत घर डालने का काम आता है कंकड़ बनाते हैं यह लोग बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं बहुत ही बढ़िया होता हैं।

लाल -पीला बहुत ही अच्छा किला है बहुत ही अच्छा मस्त किया जा रहा है बहुत ही अच्छा फूल -वूल बगल में लगा हुआ हैं।